ये बस स्टैंड है जहां पे बस जाती हुई दिखाई दे रही है।

ये एक काफी बड़ा चर्च है जहां पे लोग प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं।